यहां बहोत सारा पेड़ लगा हुआ है।

ये फोटो एक तालाब के पास की है जहां पे बड़ा बड़ा पिलर लगा हुआ है।

एक आदमीन भी खड़ा है।

कुछ छोटे छोटे साइकिल लगेंगे।

यहां पर एक लाइन से बहुत सारे साइकल लगे हुए हैं।

कुछ गाडी लगी हुई है।

कुछ लगी हुई है और यहां का भी रखा हुआ है।

ऊपर मूर्ति लगी हुई है और यहां फ्लावर रंग का घड़ी लगा हुआ है।

साइड साइड मे बहोत सारे छोटे छोटे पौध उगे हुए हैं और बहोत बड़े बड़े पेड़ भी उगे हुए--

व्हाइट और ब्लू रंग का है।

ये फोटो एक बिल्डिंग के बाहर का है जोकि वाइट रंग का है और इसका बॉर्डर पीच रंग का है।

फोटो में एक ट्रे है जिसमें बहोत सारा काला रंग का अंगूर रखा हुआ है।

इसके किनारे किनारे वाइट रंग का पेंट किया हुआ है।

यहां पे अंदर कुछ लोग खड़े हैं।

इसके नीचे एक मोर भी है।

नीचे बहुत सारा दुपट्टा पट्टा सामान बहुत कुछ रखा हुआ है।

एक आठमीन अपना दाढ़ी बनवा रहा है।

लाल रंग का टी शर्ट पहना हुआ है।

ये फोटो एक रूम की है जिसका रंग पीला है।

यहां पे एक कबर्ड बना हुआ है।

इसके बाहर बहोत सारे बाइक लगी हुई है।

जमीन मिट्टी का है जहां पे थोड़े थोड़े कंकड़ है और बीच में रोड बना हुआ है।

नीचे बेड बिछा हुआ है जीसमें वाइट रंग का चादर बिछा हुआ है।

वाइट रंग का तकिए बिछा हुआ है।

यहां बीच में दीवार बना हुआ है जहां पर पोस्टर लगा हुआ है।

साइड में टी_वी भी लगा हुआ है और यहां पे कुछ लोग जा रहे है।

रोड में बहोत सारे लोग आना जाना कर रहे हैं।

में तीन महिलाएं हैं जोकि साड़ी पहनी हुई है।

और बगल का घर में लाइट लगा हुआ--

बगल में भी बिल्डिंग है जिसके ऊपर कुछ पौधे लगे हुए--

यह फोटो पेट्रोल पंप का है यहां पे एक लाल रंग का कार लगा हुआ है।

बहोत सारे बच्चे झूला झूल रहे हैं।

वहां नीचे कुछ महिलाएं हैं।

यहां पे बहुत सारा बड़ा बड़ा पेड़ है।

जो की बहुत ही बेहतरतीब से रखी हुई है।

उसके ऊपर मैरून रंग का पेंट किया हुआ है नीचे गेट बना हुआ है।

यह फोटो एक बिल्डिंग के बाहर का है जो कि क्रीम रंग का है पीले रंग का है और गुलाबी रंग का है।